ये देखिए यहाँ पर पूरी सब्जी बनाया जाता हैं उसके बाद खाया जाता है उसको खाने का बाद आपको पता चल जाएगा की आप यहाँ पर क्या कर रहे है।

बहुत बच्छे यहाँ पर खेलने आते हैं प्रैक्टिस व्रकटीस करते हैं यहाँ पर क्रिकेट और फुटबाल दोनों का प्राकटीस किया जाता हैं।

एक खिलौना दुकान है यहां पर आपको सब चीज मिल जाएगी टॉय में आपको लेडीज ले क्या कहते है उसको टेडी बियर से ले के आपको सब चीज समुचित दामों में आपको यहां मिलेगी।

और यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक विद्यालय के बीचों-बीच यहाँ पर किस तरह सब लोग आदमी घेरे हुए हैं इससे आपको बेहद पता चलता होगा कि यहाँ पर एक जरूर एक बहोत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है।